मुझे यहां पर एक कैफे दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक पैलेस दिखाई दे रहा है जिसका नाम रॉयल पैलेस है।

मुझे यहां पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो हाथों में भाला लिए हुए हैं।

मुझे यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक ट्रक दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर बोहोत सारे बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर दो कांच के ग्लास दिखाई दे रही है।

झे यहां पर लाल रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है मुझे यहां पर टेबल दिखाई दे रही है।

जहां पर सभी बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।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

यहां पर मुझे एक खाने का काउंटर दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे कांच के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक पुरुष बैग टंगे हुए दिखाई दे रहा है।